ये देखो जो हमको दिख रहा है जोकि ये यहाँ का ये यहाँ का डेम है जोकि कबीरधाम का है और वो देखिये आइड साइड्स काफी पौधा चारो पहाड़िया है ये देखो लोग घूमने के लिए जा रहे है नाव में बैठे है।

ये देख सकते है यहाँ पे ये बिल्डिंग है यहाँ पे ये शटर लगी हुई है जहाँ से ये एंट्री गेट है और ये ऊपर फैन चल रहा हैं ये जो कार्यालय है यहाँ पर लोग अपना काम करवाने के लिए जाते है जो कि छत्तीसगढ़ मे है।

यह जंगल के बीच देखो एक ग्राउंड है जहाँ पे यह मोर घूमती हुई नजर आ रही है जोकि एक काफी ढंग का काफी बड़ा जंगल हैं।

जो कि ये कार्यालय है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है।

ये जो हमको दिख रहा है जो कि यहाँ का ये जो हॉल है ये हॉल के बीच मे ये जहाँ पे प्रवचन होने वाले है। ]